स्टेट बैंक एटीएम लिखा हुआ है ऊपर में बोर्ड में।

एक बाउंड्री से घिरा हुआ है यह कुछ लोहे का पाइप से इसमें बनाया गया है।

बाहर में इटा भी रखा हुआ है और बगल में एक और बिल्डिंग है जो कि बंद है।

दृश्य में एक बड़ा सा पहाड़ भी है।

हरा रंग का पाइप है ऊपर में एक कोई बोर्ड बना हुआ है।

एक आदमी अपने कमर पर हाथ रखा हुआ है और दोनों एक ही रंग के स्वेटर पहने हुए हैं।

बगल में एक गुलाबी और लाल रंग का है एक गद्दा रखा हुआ है।

कुछ माताएं और बहने हैं जो कि हाथ जोड़कर अपने बैठी हुई है बगल में कुछ लड़कियां है जो कि फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं।

जिसमें की सात लोग नजर आ रहे हैं।

नीचे में एक कुछ घु घूमाने वाला नजर आ रहा है और नीचे में व्हाइट मार्बल है।

ऊपर में दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और ऊपर में दुर्गा मां का पिक्चर भी दिख रहा है।

मार्बल्स है ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

उधर दो खिड़की है और एक पंखा इधर नजर आ रहा है और लाइट भी ढेर सारा है।

यह गढ़वा डेंटल क्लिनिक है।

ये सारे लोग यात्री हैं और इन लोग सफर करने को तैयार हैं।

यह एक बाजार मे स्थित दुकान का नजारा है जोकि बहोत ही बड़ा है और बाहर में एक सिक्योरिटी गार्ड है।

नदी में पानी भरा हुआ है नदी में बहोत सारे लोग हैं जोकि नहा रहे हैं।

रड़ में एक और आदमी है जो की नाव पर बैठा हुआ है।